ये एक रॉयल बुलेट का काफी बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिस पर बुलेट छपी हुई है।

पीछे की तरफ एक दीवाल दिखाई पड़ रही है जो काफी पुरानी हो चुकी है जिसका मसाला छूट गया है।

यहां पे बोहोत सारी भीड़ इकठ्ठा है कुछ बच्चे दिखाई पड़ रहे है बोहोत सारी औरते दिखाई पड़ रही हैं।

पेड़ पौधे लगे हुए हैं ग्राउंड में कुछ हरि हरि घास लगी हुई है।

एक अच्छा शटर दिखाई पड़ रहा है जिसमें एक ताला लगा हुआ है।

और इस बिल्डिंग पे कुछ काई लगी हुई है छोटी छोटी घास लगी हुई--

स्टार फाइबर ग्लास वर्क हमारे यहां हर प्रकार की साइजों के ट्रांसपेरेंट शीशे सीटे उपलब्ध है नीचे शटर दिखाई पड़ रहा है दो ताले लटके--